इस तस्वीर में मुझे कुछ दीवारों पे कपड़े दिखाई दे रहे हैं कुछ टेस्ट और कुछ निक्कर दिखाई दे रहे हैं।

एक दुकान दिखाई दे रही है जिसके अंदर कुछ प्लास्टिक के फूलों से बनी मालाएं दिखाई दे रही है कुछ झुमरी जैसे दिखाई दे रहे हैं।

जो कही जो ये क्रेशन मुझे बड़ा सा पत्थर और चट्टान दिखाई दे रहे हैं और कुछ जंगल जैसा दिखाई दे रहा है।

सामने की तरफ मुझे शीशे से बना गेट दिखाई दे रहा है एक पायो पे नाम भी लिखा हुआ दिखाई दे रा है जिस नाम हव --

मंदिर जैसा दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर कुछ सोने जैसा कलर किया हुआ है और पास में एक लोहे का बड़ा पाइप दिखाई दे रहा है जिसपे कुछ लाइट लगी हुई है।

कुछ गमलों में छोटे छोटे पौधे भी दिखाई दे रहे हैं सामने की तरफ मुझे एक बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है जिसमें छोटे छोटे कुछ प्लास्टिक के फूल भी लगे हुए हैं।

मंदिर जैसा दिखाई दे रहा है जिसके अंदर एक बड़ी मूर्ति भी दिखाई दे रही है जिसके आगे कुछ फूल भी रखे हुए हैं।

और इसके आगे कुछ महिलाएं दिखाई दे रही हैं कुछ पुरुष भी दिखाई दे रहे हैं पास में लोहे की बनी हुई रेलिंग दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में मुझे कुछ गाड़ियां और कुछ ऑटो दिखाई दे रहे हैं कुछ व्यक्ति भी दिखाई दे रहे हैं सामने की तरफ मुझे एक होटल दिखाई दे रहा है जिसकी --

पत्थर का बना पोल दिखाई दे रहा है जिसपे कुछ तार भी लगे हैं और पास में मुझे एक पेड़ दिखाई दे रहा है।

और कुछ पेड़ दिखाई दे रहे--

एक लोग का गेट दिखाई दे रहा है कुछ तार--